माधव मोटर्स नाम का हीरो का स्टोर है। ऑथोराइज़्ड ऑफ डीलर इनका का शॉप है।

मोबाइल नंबर भी दिया गया है। ये शॉप शायद अभी अभी इनौगरेशन हुआ है। इसलिए इसकी सजावट हुई है। बोहोत अच्छा --